इस फोटो में मुझे कार धुलती हुई दिखाई दे--

इस फोटो में एक लेडिस कॉर्नर का बोर्ड दिखाई दे रहा है।

इस फोटो में दो शेर के पुतले दिखाई दे रहे हैं।

इस फोटो में मुझे बहुत सारे कार्टून दिखाई दे रहे हैं।

इस फोटो में मुझे चार बतख दिखाई दे रहे हैं।